आदमी कुछ चिल्ला रहा है।

पना होटल के नाम से लिखा हुआ है।

यहां कुर्सी लगी हुई है एक गिलास पानी भरा हुआ है।

फुटबॉल टूर्नामेंट चल रही है।

यहां एक डॉक्टर की टीम दिखाई पड़ रही है जो एक रूम में बैठे हुए हैं।

पीछे साइड कुछ पोस्टरे लगी हुई है।

मोटरसाइकिल भी अंदर लगी हुई है।

पीछे अंधेला सा दिखाई पड़ रहा है।

शीशा का ग्लास लगा हुआ है।

फर्स बना हुआ है और दीवाल व्हाइट कलर की है।

यह कोई स्कूल के बाहर का फोटो है यहां तीन बसें लगी हुई है।